सफेद रंग से पेंट हुआ है और खिड़कि ये सब कांच की लगी हुई हैं।

बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों में बहुत सारे बर्फ भी नजर आ रहे हैं और एक झोपड़ी है जो कि नीचे है और बहुत ही लोग आए हुए हैं घुमने --

नीचे फर्श टाइल्स का है। एक बहुत बड़ा अलमारी बनाया है। यहां पे हाथ धोने वाला बेसिंग रखा गया है जो की सारे बेचे जा रहे है।

ये बीच में टेबल रखा हुआ है और नीचे फर्श टाइल्स का बना हुआ है एक साइड अलमारी है।

और एक साइड काउंटर है जहां पे अह बिलिंग हो रही है और ऊपर का जो छत है वो बहुत ही सुंदर--

और दूसरी तरफ बहोत ऊंची दीवाल चली है।

एक गाड़ी है जो कि नीचे खड़ी है चार पहिया--

और आसपास बहोत ही हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं और एक सुखी पेड़--

और आपस में बातें कर रहे हैं और दूसरे साइड काउंटर है और एक तरफ किचन बना हुआ है जहाँ पर शेफ है जो कि खाना बना रहे हैं ।

एक बहोत हि बड़ा घना जंगल है जहां पे चारों ही तरफ--

एक बहोत बड़ा रूम है जिसमें बहोत सारे सामान रखे हुए हैं जैसे बेल्ट रखा हुआ है बहोत सारा और यहां पर मछली रखने वाला भी जाल रखा हुआ है।